यह एक पेट्रोल पंप है।

इस पेट्रोल पंप में दो आदमी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे दोनों तरफ से पाए दिखाई दे रहा है।

और सामने ताड़ का पेड़ बहुत सारा दिखाई दे रहा है।

और यहां पे बहुत आदमी भी दिख रहे हैं।

और बगल में नदी भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे बहुत सारा कुर्सी भी है।

इस नदी में एक बहुत बड़ा हाथी है।

हाथी पे एक आदमी खड़ा है।

और सामने पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं।

यहां पे नीचे एक टेबल दिखाई दे रहा है।

नदी के किनारे पर एक रूम बनाया गया है।

यहां पे बहोत सारा आदमी लोग बैठे हुए हैं।

और पानी भी दिख रहा है।

इस स्टॉक में ईंटे का भी घरावा किया हुआ है।

गेट के सामने कुछ ईंट दिखाई दे रही है।

इस बिल्डिंग का कलर व्हाइट और कत्था है।

सामने तार भी दिख रहा है इसमें लाइटें लगी हुई है।

यहां बाहर एक स्कैनर में दिखाई दे रहा है।

इस ढाबा में बहुत सारे माले टांगे हुए हैं।

इस मैदान में बहोत सारा फूल दिखाई दे रहा है।

यह एक रेलवे स्टेशन है।

छत पे दो आदमी खड़े हैं।

दीवार पे बहुत सारा पाए हैं।

इस दुकान में बहोत सारा लाइटे लगी हुई है।

और एक पेसेंट कुर्सी पे लेटा हुआ है।

इस दुकान के गेट में हरा कलर का दिखाई दे रहा है।

इस अलमारी में बहोत सारा प्लेट कप ग्लास दिखाई दे रहा है।

इस दुकान में बहोत साला अलमारियाँ बनाई गई है।

और यहां पे लाइटें भी लगाई गई है।

और आदमी लोग भी दिख रहे हैं।

यह एक बहुत अच्छा रूम है इस रूम में लाइटे लगाई गई है।